एक नीचे का हिस्सा नजर आ रहा ह जिसका कलर ब्लाक नजर आ रहा है और यहां पर सामने की तरह बैठने के लिए जगह बनाई गई है और जगह जो है वह कुछ लकड़ियों से बनाई गई है ऊपर की तरफ एक फेन है जोकि -

पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है और यहाँ पर कोई इंसान नहीं नजर आ रहा है। यह पूरा ही खाली और सुनसान भरी जगह लग रही है और यह दिन का दृश्य है। यहाँ पर जो है काफी लग रहा है।

और दीवारों का जो कलर है वह थोड़ा-सा ग्रीन कलर में है लाइट ग्रीन कलर की नजर आ रही है। यहां पर तीन चेयर्स पीछे की तरफ लगे हुए हैं और उसके सामने की तरफ दरवाजा नज़र आ रहा है।

एक येलो और थोड़ी सी पिंक कलर का एक दीवार नजर आ रहा है इसमें एक ब्लैक और येलो कलर के एक जो है बलूंस टंगी हुई है इसमें कुछ रिबन लगे हुए हैं एक बड़ा सा डेस्क नजर आ रहा है उसके ऊपर कलर का जैकेट है।

अंदर के तरफ काफी लाइटे जल रही हैं अलग अलग कलर के लाइटे जल रही हैं यहाँ पे बाहर की तरफ काफी अँधेरा छाया हुआ हैअन्दर की तरफ बस लग रहा है काफी लोगो की भीड़ जमी हुई है यहाँ पर कुछ सेल या फिर कुछ अइसा चीज चल रहा इसलिए लोग यहां पे काफी भीड़ जमाए हुए हैं और बाहर की तरफ काफी अँधेरा नज़र आ रहा है।

है और देखने में काफी अच्छा लग रहा है और भी ज्यादा चीजें है और ये एक बड़ी सी ग्रीन कलर के हॉल जिसमे एसी वगैरा भी अच्छी खासी लगी हुई है ।